कृष्ण भगवान के चरण पादुका ही दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें यहां पे एक--

यहां पे हमें अह यह बिल्डिंग सफेद रंग की कलर की है।

अ ला लाल कलर के अ--

यहां पे हमें बहोत से टायर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे फुरफुरी जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें यहां पे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।